जो की देखने मे बहोत सुन्दर लग रही है और पीछे से भी एक लाइट लगी हुई है जो की बहोत सुन्दर है।